ये कोई ट्रक ड्राइवर है इन्होने नया-नया ड्रा इ लगता है ट्रक लिया है उन्होंने सामने में लेके एक सेल्फी लिया है और ये बस लग रहा है जिसके ऊपर ग्रुप लिखा हुआ है उसके ऊपर एस.ए.एम.इ. वेकेशन लिखा है शायद इस बस का नाम समर है इन्होने शूज़ पहना है और --

ऊपर से जो है ये उम्म रोड भी बहुत कच्चा उच्चा --

ये डेंटल लग रहा है यहाँ पर ओर साइड पे बहोत सारे आंटी सब भी खड़ी हुई है और यहाँ पे पास में से बाइक सब जा रहा है जो दिखने में बहोत अच्छा लग रहा है और दिवाली का पटखा जल रहा है जो देखने में और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है ।

एक अंकल है वो भी पानी चढ़े है पीछे में बहुत सारे आंटी है दिखने में बहुत अच्छा है ये हाथी बहुत बड़ा है जिसके सूंड में बहुत सारे कलर किए गए है जो दिखने में बहुत अच्छा है बहुत सुन्दर है ऊपर में ब्रिज है ब्रिज में रास्ता है रस्ते में लोग जा --

वहाँ पे जो पास मे एगो ऐसे हाथ जोडके एक देवी जैसे कुछ खड़ा है जो देखने मे बहुत सुन्दर बहुत अच्छा लग रहा है और इसके डेकोरेशन भी बहुत अच्छी से किए गए है और ये अंकल और आंटी बहुत अच्छे दिख रहे हैं | एक साथ बहुत --